बाहर हमें एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें एक मैट भी नजर आ रहा है।

यह पिक्चर हमें किसी समंदर की नजर आ रही है।

यह पिक्चर हमें एक डेंटल क्लिनिक की नजर आ रही है।

यह पिक्चर हमें एक सिटी की नजर आ रही है।

बाहर हमें एक गार्डन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें पीछे एक गुरु नानक देव जी की फोटो भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

आस पास हमें कुछ सूखे हुए पत्ते भी पड़े हुए नज़र आ रहे है।

यह पिक्चर हमें किसी पेंट की शॉप की नजर आ रही है।

प्लेट में हमें कुछ पराठें रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह पिक्चर हमें किसी खेत की नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

आसपास पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।

लड़के के हाथ में फोन पकड़ा हुआ नजर आ रहा है।

पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

आस पास बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास मे हमे बहोत सारी चेयर्स भी लगी हुई नजर आ रही है।